उसका बगल में ग्रीन कलर का डस्टबिन है।

मछली अलग अलग टाइप का है चंगा है रोहू है पंगस है लाइट है।

बहोत सारा पेपर है फेविकोल है।

स्कूटी में एक औरत है एक लरका अंदर जा रहा है।

ये हीरो का एक शोरूम जगह है।

ये साइड में नया नया बाइक स्कूटी रखा हुआ है हीरो कंपनी का।

टी शर्ट सुखाया हुआ है आगे में गंदा वाला एक पॉकेट है।

लि का मिनरल वाटर है रुमाल लटका के --

और एक टाइल्स का है एक चेयर है एक टेबल है।

आगे में मोटा है जो बच्चा को देख रहे हैं।

आदमी आना जाना के लिए सीढ़ी है।

सोफा को बहुत अच्छे से पालिश वालिश किया हुआ है पेंटिंग वेंटिंग किए है।

ग्लास का विंडो है टेबल है चेयर है टेबल के ऊपर में फोन ओन हैं।